सामने खुला मैदान है टावर लगा हुआ है ऊंचा सा खुला आसमान दिख रहा है पीछे बाउंड्री वॉल है ईट की--

सामने खेल का मैदान दिख रहा है घास निकली हुई है लकड़ी के बांस रखे हुई हैं एण्ड घर की दीवारों में घास निकल आई है धुप दी खिली हुई दिख रही है और आसमान भी --

एक गुम्बज है फ्लैग लगे हुए है एंड घर बने है आसमान दिख रहे है खुले।